यहाँ पर आस पास कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ लोग भी नजर आ रहे है यहाँ पर कुछ खिड़किया भी नजर आ रही है जो की लोहे की दिखाई दे रही है।

यहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक ईट की बाउंड्री भी की गई है आसपास में।

यहाँ पर कुछ बस भी खड़ी हुई नजर आ रही हैयहाँ पर काफी सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे है यहाँ पर सफेद-सफेद आसमान भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी बड़ा मैदान भी नजर आ रहा है।